यह एक शॉप है इसका कलर व्हाइट है।

शटर लगा हुआ है। येल्लो रंग से वेलकम लिखा हुआ है। आई साइड में ग्रील लगी हुई नजर आ रही है जिसके बीच में सीढ़ी है।

व्हाइट और रंग का कपबोर्ड बना हुआ--

पीले रंग का बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसके सामने बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।